ये एक फुटबॉल खेलने का मैदान है जहां पर काफी प्लेयर्स बैठे हुए हैं।

बहुत ही अतिसुन्दर दिख रहे है|

सिंदूर से रंगा गया है और ये बहुत देखने में अच्छा लग रहा है जानवर उसके ऊपर एक पुल भी है पानी में हाथी खड़ा है और काफी लोग इसको देख--

इस तस्वीर में किसी धार्मिक स्थल को दिखाया जा रहा है यह काफी भीड़ लगी हुई हैं।